नीचे टेबल्स पे भी रखे हुए हैं कुछ डब्बे रखे गए हैं सजा करके।

एक सीढ़ी बनी हुई है अंदर की तरफ जाती हुई जहां एक काउंटर है।

काफी धुन दिखाई पड़ रही है दूर दूर काफी भीड़ दिखाई पड़ रही है।

गुजराती पेपर जैसा कुछ स्टीकर है जिसमें लिखा हुआ है अमेरिकन इन साइड आउट --

ऑन स्ट्रेस भी डब्बे पर लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इधर कुछ लड़कियां बैठी हुई है जो लाल रंग की टी_शर्ट और सफेद रंग के स्कर्ट पे हैं।

केबिन्स के चारों तरफ जो बोर्ड लगाए गए हैं वे नीले कलर के हैं।

और दीवार एक और व्यक्ति पानी की बोतलें भी रखी हुई हैं।

इस चित्र में एक मस्जिद के हाल का दृश्य है जहाँ नीचे मैट बिछा हुआ है मैट अ नीले कलर का है उसमे कुछ कढ़ाई की हुई है।

और कुछ कलाकृति दीवारों पे बनी हुई है जो सफेद रंग से पेंट की हुई है।

पीछे काफी कुर्सियां लगी हुई हैं।

ये चित्र में एक प्रतीक्षा हॉल का दृश्य है जहां काफी लोहे की कुर्सी रखी हुई है।

और पेड़ पौधे भी ऊपर विविध दिख रहे हैं।

काले रंग के तार से जुड़ी हुई है बाहर एक ब्रश एक हथौड़ी और एक लकड़ी का बट्टा दिखाई दे रहा है।

नंगी तारे भी दिखाई दे रही है लकड़ी का वो बना हुआ सीधी भी दिखाई पड़ रहा है।

और कुछ रेक्स भी बने हुए हैं एक सीढ़ी नुमा लकड़ी का कुछ बना हुआ है।

इस चित्र में एक दुकान एक शोरूम का दृश्य है जहां पे काउंटर बना हुआ है काउंटर की तरफ रैक्स है रैक्स पे काफी कपड़े रखे हुए है।

और वहां पे काफी खाली कुर्सियां रखी हुई हैं टेबल के ऊपर एक लैपटॉप इसी भी रखा हुआ है।

इस चित्र में एक छोटा मैदान दिखाई पड़ रहा है अ अ जिसके बीचों बीच बच्चों के खेलने के लिए एक लोहे की आकृति बनी हुई है।

लोहे की बाड़े बनी हुई हैं जो खंभों से टिकी हुई है।

की भी फोटो लगी हुई है लाइटे जल रही है।

और ये सामने कांच के दरवाजे बने हुए हैं।

दीवारों पे कुछ पोस्टर भी चिपके हुए हैं।

इस चित्र में एक चर्च का दृश्य है इस हाल में काफी रंग बिरंगे बलूंस लगाए हुए हैं जो सफेद और नीले रंग के--

चित्र में एक मैरिज बैंक्विट हॉल का नजारा है।

इस चित्र में एक रास्ता दिखाई पड़ रहा है जिसके बीच में डिवाइड बना हुआ है जो पीले और काले रंग का है।

कंकरीट मिक्सिंग करने के लिए भी मशीन लगी हुई दिखाई पड़ रही है।

कुर्सियों पे कुशन भी लगे हुए हैं फर्श नीले और सफेद रंग का है।

रैलिंग्स बने हुए है और बाहर का नजारा भी दिख रहा है।

इस दृश्य में किसी सुपरमार्केट का दृश्य है जो अभी बंद दिखाई पड़ रहा है।

और सामने की तरफ कुछ कर्टेंस भी दिखाई दे रहे हैं जो गुला नीले और सफेद रंग के हैं।

क्लैंप जैसी लाइट भी चलती हुई दिखाई दे रही है भाई और भी एक काउंटर है उसके बगल में डस्टबिन रखा हुआ है।

सेंट्रलाइज्ड ए_सी लगा हुआ है लाइटें जल रही है एक लाल रंग की चुन्नी भी दिखाई पड़ रही--

इस चित्र में एक लाइब्रेरी का दृश्य है जहां काफी स्टूडेंट बैठकरके पढ़ाई कर रहे हैं।

नीचे एक बेड दिखाई पड़ रहा है जिसके उपर नीले रंग का बेड लगा हुआ है।

छोटे पेड़ पौधे गमलों में लगे हुए हैं।